एक रैंप बना हुआ दिखाई दे रहा है और दीवार के पास में बहुत सारा कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा है।

एक रूम है रूम के अंदर बहुत सा लैपटॉप दिख दिखाई दे रहा है और बहुत के --

एक दो मशीन है मशीन ये --

सामने पेड़ है पानी पड़ा हुआ है नीचे और सड़क बनी हुई है।

एक बतख है बतख की टांग एक के ऊपर एक नीचे चोच ठिकी करी हुई है खड़ा है।

पोल्स लगे हुए हैं वहां पर प्रवेश के लिए फीस ई मित्र पर --

दो लकड़ी ले आ रहे है दूर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो स्कूल सी लग रही है।

एक टेबल है टेबल के अंदर एक टेलीफोन है दो रजिस्टर रखा हुआ है उम् सोफे भी अंदर दो तीन तकिया है।

ट्रेन की पटरिया दिखाई दे रही है तीन उसके अंदर एक आगे से आ रही है ट्रेन एक जा रही है एक बहुत बड़ी ट्रेन है ट्रेन के ऊपर--

चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं बीच में ग्राउंड है बगीचा बना हुआ है उन्हें रोड है गुलाब का --

पांच सात सात आठ नाव दिखाई दे रही है और--